इस फोटो में बहोत सारे अअ बुलेट बाइक की टैंकी वगैरह दिख रहे हैं जो गोल्डन एंड ब्लैक कलर का कलर किया हुआ है कुछ मठ गार्ड वगैरह दिख रहे हैं.

इस फोटो में हमें एक फोन का शॉप दिख रहा है जिसमें ओप्पो का ब्रेंड लगा हुआ है और बहोत सारे--

इस फोटो में हमें एक होटल दिख रहा है जो ग्रे कलर का ब्लू कलर का काँच वगैरा लगा हुआ है कुछ ए_सी के डक्ट वगैरह दिख रहे हैं कुछ ब्लू ब्लू कलर का--

ब्लैक ब्लैक कलर के कपड़े वगैरह दिख रहे हैं नीचे कुछ येलो टाइप के सूखे घास दिख रहे हैं।

है और दो चेयर लगे हुए हैं जो ब्लैक कलर के हैं नीचे में स्टील का पैनल दिया हुआ है एक--

पिलर के ऊपर टावल रखा हुआ है कुछ बैच टाइप का है जो यल्लो कलर का है कुछ पानी वाटर रखा हुआ है ।

और वाइट कलर में है उसमें कुछ आदमी एंड लेडीज फोटो बने हुए हैं सामने--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

खंबे वगैरे हैं जो रेड कलर के हैं उसमें कुछ रस्सी वगैरह लगे हुए हैं ऊपर कुछ एल_ई_डी लाइट वगैरह है।

एक झोपड़ी टाइप का बना हुआ है जिसके ऊपर रेड कलर का एक झंडा लगा हुआ है एक तारा मच्छी दिख रहा है कुछ लाइट वगैरह दिख रहे हैं कुछ--

केले के पत्ते वगैरह भी दिख रहे हैं और कुछ बाउंड्री किए हुए है जो पेस्ट वगैरह से कवर किया हुआ है।

इस फोटो में हमें एक चर्च दिख रहा है जिसमें तीन पेंटिंग लगे हुए हैं सामने एक क्रॉस का निशान है जो रेड कलर का है एक टेबल लगा हुआ है जो वाइट कलर से कवर --

इस फोटो में हमें एक ईटा भट्टा दिख रहा है जिसमें एक चिमनी लगा हुआ है जो ग्रे कलर का है कुछ ईटे वगैरह है जो सजाए हुए हैं कुछ अअ डोर टाइप का दिख--

अअ लड़का है जिसके गोद में एक छोटा सा बच्चा है जो रेड कलर का हाफ टी शर्ट पहने हुए हैं कुछ लेडीज वगैरह हैं जो पिंक और ऑरेंज कर के साड़ी पहने हुए हैं उस आदमी--

अअ माथे पे एक टोकरी दिख रहा है कुछ घास वगैरह दिख रहे हैं कुछ केतारी के दिख रहे हैं कुछ ऊपर में सजाने वाला रिबन वगैरह लगा हुआ है।

इस फोटो में हमें एक ईटा भट्टा दिख रहा है जिसमें बहोत सारे सीमेंट के ईटे वगैरह बने हुए हैं कुछ अअ मार्बल बने हुए हैं कुछ ट्रैक्टर दिख रहे हैं जो ब्लू कलर --

के है और वाइट कलर के है एक बड़ा सा ट्रक दिख रहा है जो यल्लो कलर का है और उसका पीछे का अअ बॉक्स है जो ब्लू कलर के है.

में एस_एम लिखा हुआ है कुछ बड़े-बड़े पेड़ वगैरह दिख रहे हैं कुछ इलेक्ट्रिक के तार दिख रहे हैं एक झोपड़ी है जो टीने का शटर का बना हुआ है।

फोटो में हमें दो बच्चे दिख रहे हैं जो बाउंड्री के ऊपर बैठ कर के फोन चला रहे हैं बगल में एक पिलर दिख रहा है जो रेड कलर का है उसके पीछे--

लगा हुआ है जो ऑरेंज कलर के कपड़े में है और एक नीचे मिरर लगा हुआ है जिसमें रेड कलर के कलर्स लिखे हुए हैं और कुछ प्रोडक्ट वगैरा--

ऊपर में तिरपाल है जो ब्लू कलर का है पीछे ग्रीन ग्रीन कुछ अ गा --

इस फोटो में हमें नन तीन बच्चे दिख रहे हैं और कुछ लेडीज वगैरह हैं कुछ लोहे के ग्रिल वगैरह हैं और--

इस फोटो में हमें एक शिवलिंग दिख रहा है जिसके बगल में एक पीतल का नाग दिख रहा है ऊपर एक पीतल का कलस है जिसमें गेंदे फूल के माले लगे हुए हैं और गेंदे फूल के कलर है।

ये है और एक ब्लू कलर का डमरू दिख रहा है जिसमें रस्सी वगैरह से अअ बांधे हुए है ।

बहोत सारे आदमी वगैरा हैं जो खड़े हुए हैं पीछे घांस वगैरा दिख रहे हैं कुछ पेड़ हैं दिख रहे कुछ छोटे छोटे झोपड़े वगैरा दिख--

बैच वगैरह है जो रेड कलर के हैं और इन दो तीन चेयर है जो ब्लैक कलर के एंड वाइट कलर के हैं एक पिंक कलर के चेयर है।

इस फो फोटो में हमें एक बहुत बड़ा मैदान टाईप का दिख रहा जिसमें की छोटे छोटे हरे हरे घास वगैरे है पीछे कुछ बड़े बड़े अ पेड़ वगैरे भी है बादल है जो व्हाई--

एक लेडिस है जो अह येलो कलर की सूट पेहनी हुई है ब्लैक कलर के ओढ़नी है हाथ में एक पर्स है।

और हाथ में ऑरेंज कलर का कैरी बैग वगैरह भी है एक आदमी है जो पिंक कलर के टी शर्ट पहने हुए खड़े हैं कुछ बॉक्स वगैरह हैं।

पेड़ वगैरा दिख रहे हैं एक गाय दिख रहा है और कुछ सूखा गाँच वगैरा भी देखा जा रहा है ।

ऑर्डिनरी फूल है प्लास्टिक के कुछ अअ चक्के में लगने वाले कुछ प्लास्टिक वगैरह है अअ टायर है एक --

पेड़ वगैरा दिख रहा है शाम ऊपर में एक बैनर लगा हुआ है जिसमें जॉनी लिखा हुआ है और कुछ उसके बगल में एक लेडीस खड़ी है।

इस फोटो में हमें एक हॉस्पिटल दिख रहा है जो बाहर से ये वाइट कलर का है उसमें कुछ लोहे वगैरा निकले हुए हैं और उसके--

बहोत सारे लेडीज हैं जो इस समय दिख रहे हैं जो बाइक लेके खड़े हैं और कुछ खड़े हैं और एक पेड़ वगैरह दिख रहे हैं एक कार भी दिख रहा है जो रेड कलर का --

वाइट कलर कलर का पी लिखा हुआ है ऊपर एक बोर्ड है ब्लैक और रेड में जिसमें फिफ़्टी परसेंट ऑफ लिखा हुआ है और नीचे एक बैनर है जिसमें --

इस फोटो में हमें एक अअ सॉफ्ट टाइप पे दिख रहा है जिसमें स्टॉक फोल्डिंग लिखा हुआ है और एक बैनर है ऊपर में जिसमें वाइट एंड ब्लू कलर का है उसमें स्टॉक फोल्डिंग लिखा हुआ है।

कुछ यहाँ पर पिलर वगैरह है सब वाइट कलर के रेड क अअ वाइट एंड रेड कलर किए हुए हैं कुछ टाइल्स वगैरह लगे हुए हैं एक --